और ये जो पीछे पेड़ हैं हरे-हरे बोहोत ही अच्छे हैं। ये काले भी हैं बोहोत प्यारे हैं। ये जो ईंटें हैं बोहोत ही अच्छी हैं।

और ये जो पीछे शटर है बहोत ही अच्छा लग रहा हैं| ये जो टेबल के ऊपर केक रखा हुआ है| ये बहोत ही अच्छा लग रहा हैं।

ये जो बर्तन हैं ये बहोत ही अच्छे लग रहे हैं। पीछे सरिये रखे हुए हैं। ये बहोत अच्छे हैं।

पीछे पीली कुर्सी रखी हुई है ये बोहत ही अच्छी है और जी ग्लास है बड़े ही अच्छे हैं इनमे पानी पीने में बड़ा ही मजा आता है | ये टेबल ही बहुत अच्छी है।

एक कप रखा हुआ है। ये लाल कलर का है। इसके अंदर सफेद कलर है। ये बोहोत ही अच्छा लग रहा है और भी उअर रखा हुए हैं। कप बोहोत ही प्यारे लग रहे हैं। पीछे दीवार है।

और ये जो इसके अंदर पन्नी के अंदर जो रखे हैं। ये पन्नी भी बोहोत ही अच्छी लग रही है। ये केकड़ा खाने में बड़ा मजा आता है और ये फोटो बोहोत अच्छा लग रहा है और इस फोटो को देखने में हमें अच्छा भी लग रहा है। ये फोटो --

ये जो आसमान है बहोत ही अच्छा लग रहा है। ये जो छोटे-छोटे पत्थर हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं।

यहां जो बच्चे खड़े हुए हैं ये बहोत ही अच्छे हैं।

ये बिरयानी बोहोत ही अच्छी है खाने में बोहोत लज़ीज़ होती है एक पीछे थमस अप की बोतल रखी हुई है ये बोहोत ही अच्छी है चम्मच तो और भी ज़्यादा ही अच्छे हैं।

पेट्रोल पम्प बोहुत ही अच्छा है। यहाँ का तेल बड़ा ही अच्छा होता है।